इस रोड के किनारे में--

कूच मीर के गट्ठे रखे हैं।

कुछ लोग भी उस ऑटो के पास खड़े हुए है।

गाजर टमाटर और एक आदमी

और नीला आसमान भी दिख रहा है।

लाल और काले कलर का भी स्वेटर है।

कुछ छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक लड़का जिम में खड़ा हुआ है।

इसकी जमीन पे हरी घास दिख रही है।